यहाँ पर आपलोग देख सकते है सामने की तरफ ये एक दुकान है जिसमे की काफी सारी ट्रे मे काफी सारे अंडे रखे हुए है और नीचे की तरफ कुछ ब्रेड --

यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक रेलवे स्टेशन की फोटो है जहां पर हमें एक रेलवे ट्रैक की यहाँ पर खड़े होकर ली गई है।